और यहां पर छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं और यहां पर टीचरों का फूल--

और यहां पर बहोत ही खतरनाक खतरनाक जानवर--

रेहते हैं जैसे की शेर चीता।

केनरा बैंक है जो की उमरिया में है।

ढाबा ऐ जहा पर लोग बात--

फर्नीचर की दुकान है और यहां--

यहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही--

भट्ठी है जहां पर ईंट मिलती हैं।

छोटी से लेकर बड़ी तक बंदूकें मिलती है।

एक खूबसूरत सा बैठा हुआ है।

यहां एक घर भी बना हुआ है और आसपास हरियाली है।